इस पिक्चर में आप डिस्पोजल को देख सकते हैं।

इस पिक्चर में आप बहोत सारे पेड़ पौधों को देख सकते हैं।